छत ढलाई की जार रही हो यहाँ पे एक पीलर खड़ी की गयी है उसमें से रड निकली हुई है बहुत साड़ी।

जो खुली हुई है और यहाँ पे एक बोर्ड टंगी हुई है। जिसमें एसबीआई लिखा हुआ है।

पास में कुछ समाने गिरी हुई हैं यहाँ पे एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसकी पिलर ऑरेंज रंग --

आस पास में बहोत सारे लोग है सामने पानी गिरती हुई नजर आ रही है और एक छोटी सी झील है।

छोटे-छोटे गंदे पानी में फेकी हुई है और बहोत ही गंदे लग रहे है।

मुझे एक चित्र दिख रही है। सामने एक रोड है। जिस पर बहुत सारे कंकड़ नजर आ रहे हैं और कुछ पत्थर।

वहाँ पे एक कार रुकी हुई है जो सफ़ेद रंग की और काले रंग की है। जिसमें कांच लगी हुई है और आम सामने एक --

बाहर में खाकी वर्दी पहने दो आदमी है उनके हाथ में --

डार्क ब्लू है सफ़ेद है ऑरेंज है लाल है क्रीम है।